उसके ऊपर एक खंभा लगा है। खंभे के ऊपर एक पहिया ला दिख रहा है।

ये महिलाओं ने अ ने ये कथई कलर की साड़ी पहनी हुई हैं और एक महिला ने सफेद कलर की पहनी हुई है।

टी शर्ट में खड़ा हुआ है। एक बच्चा बैठा हुआ है जिसने फिरोजी टी शर्ट पहनी एक और बच्चा बैठा--

सामने ए में मैदान दिख मस्जिद के नीचे एक मैदान दिखाई दे रहा है अ जो कि अ सुनसान है।

सामने में दुकान के सामने मैदान है। मैदान में एक स्कूटी और तीन बाइक खड़ी हुई हैं। अ एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है साइड में।

और सीढ़ियों के दोनों साइड रेलिंग लगी है जोकि लोहे की है। ऊपर टीन शेड डला है। सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।